और रोड के डिवाइडर में दो पेड़ लगे हुए हैं।

इसमें तीन दरवाजे को दिखाया गया है।

चित्र में चार प्लेट चार चम्मच एक कटोरी को दिखाया गया है।

इस चित्र में दिखाया गया है की इस दुकान में ग्रोसरीज के कॉस्मेटिक ड्राई फ्रूट्स एंड मैनी मोर --

इस इमारत का रंग सफेद और हल्के लाल किसी की गई है इमारत को देखते हुए प्रतीत होता है कि इसका तीन फ्लोर बना हुआ है।

इसमें बहोत भीड़ दिखाया जा रहा है इस पंडाल को सजाने के लिए फूलों का प्रयोग किया हुआ है।

ये चित्र किसी स्टेशन के बाहर को दर्शाया गया जहां बहुत भीड़ लगा हुआ है।

यह चित्र किसी जम के मिरर की है जिसमें एक पुरुष सेल्फी लेते अपने बॉडी को फ्लेक्स करते हुए दिख रहा है।

इस दुकान के हर एक रैक पे अलेक अनेक प्रकार के फूल रखे हुए हैं।

यह कोई कार्यालय के चित्र है।

इस घर के फर्श में टाइल्स लग रहे हैं।